सारे इसके पास प्रोडक्ट्स हेंगे यहां पर एक आदमी जो है येलो कलर की टी ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहने बेच रहा है और वाइट कलर की टी शर्ट पहने खरीद रहा है यहां पर पोस्टर भी लगे हुए हैं लाइट भी हेंगी --